यहाँ एक चिकित्सालय हैं जो कि पतंजलि चिकित्सालय है यहाँ पे शीशे का दरवाजा लगा है पिलर गुलाबी रंग के हैं। यहाँ पर ये कुर्सी है सफेद रंग की है।